मुझे इस चित्र में एक दीपक रखा हुआ दिख रहा है।

मुझे इस चित्र मे लाइट जलती हुई दिख रही है मुझे इस चित्र मे कांच का ग्लास दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं।

मुझे इस चित्र में लाइट चलती हुईं दिख रही है।

मुझे इस चित्र में प्ले जोन लिखा हुआ दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में रफीक लिखा हुआ दिख रहा है।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

मुझे इस चित्र में लाइट जलती हुई दिख रही है।

मुझे इस चित्र में ट्रेन नज़र आ रहे है मुझे इस चित्र में एक चेयर नज़र आ रही है।

मुझे इस चित्र में टेबल डेस्क दिख रही है मुझे इस चित्र में विंडो दिख रही हैं।

मुझे इस चित्र में एक कार दिख रही है।